दिए गए इमेज में हमें एक आ सड़क नजर आ रही है जो इंटर लॉकिंग है और उसमें एक बड़ा सा गेट है।

दिए गए इमेज में हमे एक मंदिर दिखाई दे रहा है। उसके गेट पिले रंग के हैं। दीवाल लाल रंग के और सफ़ेद रंग की है। ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है। जिसमे धर्मों रक्ष --

इरस अ रछीत पंच मुखी महादेव मंदिर लिखा हुआ है ऊपर कलश बने हुए है जो लाल रंग के हैं साइड में भी एक गेट लगा हुआ है वो पि --

दिए गए इमेज में हमें एक शॉप दिखाई दे रही है। उसके गेट शीशे के लगे हुए हैं और सिल्वर से सिल्वर का फ्रेम है साइड से।

और उसमे वो होटल के तरफ जा रहे हैं। ऊपर एक बोर्ड लिखा हुआ है। उसमे होटल गेट वे कर्नाटक लिखा हुआ। कई सारे लाइटे --

और पानी का बहोत ही सुन्दर झरना सामने दिखाई दे रहा है। पानी के अंदर हरे --

उस मैदान में हरे रंग की घास है। सामने बोहत बड़े-बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं। आसमान भी नीला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ हमें एक लोग --

हम्म बोहत सुन्दर बादल नजर आ रहे हैं जो सफ़ेद और हल्के नीले रंग में दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक और घर है उसमें टीन नीले रंग की टीन लगी हुई हैं।

एल.ई.डी भी लगी हुई है जो चन लोग देख रहे हैं। ऊपर छत में पंखे लगे हु --

दिए गए अ इमेज में हमें बोहोत ही सुन्दर च तस्वीर नजर आ रही है। जिसमें तीन --

दिए गए इमेज में एक शोरूम दिखाई दे रहा है। इसमें गर्म कपडे नजर आ रहे हैं। कई गर्म स्वेटर्स हैं जो --